सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं।

इस पे एक ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

इस फोटो में बड़ी सी नदी है।

एक नाव पे ढेर सारे लोग हैं।

एक लोहे की रेली लगी हुई है उसमें दो बैनर लगे हुए है।

लगा हुआ है लोहे का।

एक लोहे की रैली लगी हुई है उसमें शीशा लगा हुआ है।

मालाएं लटक रही हैं व्हाइट और रेड कलर की।

सामने कुछ पौधे लगे हुए हैं ढेर सारे।

ढेर सारे लोग खड़े हुए हैं और कुछ बैठे हुए हैं।

ऊपर कुछ गुलदस्ते लगे हुए हैं।

उसपे वाइट कलर का कपड़ा लगा हुआ है।

कुछ ढेर सारी टी_वी रखी हुई है।

तीन लोहे के खंभे लगे हैं ऑरेंज कलर के।

सामने दो सिलेंडर रखे हुए हैं।

उसपे लिखा हुआ है ज्ञानी जी का ढाबा।

कुछ ढेर सारे लोग खड़े हुए हैं।

ये फोटो में सामने एक रेड और फिरोजी कलर का गेट लगा हुआ है।

सामने एक काउंटर लगा हुआ है वाइट कलर का।

वो कुर्सियां रखी हुई हैं वाइट कलर --

सामने दो बोर्ड लगे हुए हैं पीले कलर और रेड कलर के।

बिल्डिंग में ढेर सारे रेड कलर के दरवाजे लगे हुए हैं।

इसमें ढेर सारी काउंटर बने हुए हैं।

और कुछ ढेर सारी अलमारियां बनी हुई है।

जमीन पे हरी हरी घास है।

टावर लगा हुआ है लोहे का।

एक पर्दा लगा हुआ है ब्लैक कलर का।

कुछ ढेर सारी खिड़कियां लगी हुई हैं।

कुछ ढेर सारी लाइटें लगी हुई है।

इस फोटो में सामने ढेर सारे लोग खड़े हुए हैं और बैठे हुए--

पर कुछ ढेर सारे व्हाइट कलर के होल्डर लगे हुए हैं।

इस फोटो में सामने एक बेड बिछा हुआ है।

छत पे व्हाइट कलर का पंखा लटका हुआ है।

कुछ मीनारे लगी हुई है लोहे की।